जहां एक बच्चा आगे है और एक अच्छा पीछे है और वह काफी इधर उधर घर दिख रहे हैं खंभे भी खड़े हुए हैं।

लोग आ जा रहे हैं और दूसरी साइड बाइक भी एक दो बाइक खड़ी हुई हैं।

खड़ी हुई है लगता है जा रही है --

और गेट के अंदर बौंड्रेशन है और पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

प्लांट के पौधे भी डाले जाते हैं जो बाहर से देखने में बहुत बेहद खूबसूरत लगते हैं।

और भी काफी सामान ऊपर रखा हुआ है इसी तरह का बना के --

एक बच्ची है और एक महिला यहां पे बैठी हुई है।

यह एक शॉप है जिसमें काफी सारा समान इधर-उधर रखा हुआ है यह मोबाइल की शॉप है इसमें एयरफोन वगैरा की डिब्बे रक्खे हुए एयरफोन भी रखे हुए हैं।

और बगल में कुर्सी रखी हुई है आज एक और एक आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है।

और बाहर यहां पे एक साइकल और बाइक खड़ी हुई है अंदर यहां पे लोग सामान ले रहे हैं और लाइटिंग वगैरह भी बहुत अच्छी की गई है।

और काफी यहाँ पे घास वगैरह भी उगी हुई है फालतू वाले --

यहाँ पे पहाड़ है यहाँ पे पानी बह रहा है।

सभी प्रकार की दवा पाउडर और गोलियों वाले डिब्बों में रखी हुई है।

और साड़ी वगैरह भी पुतलों को पहनाई गई है पुतलों को ड्रेस भी पहनाया गया है और सामने यहाँ पे --